एक सड़क है। सड़क मे एक कार खड़ी है जो कि सफेद कलर की है। उसके पीछे बोहोत सारी टैक्सियाँ हैं जो कि काले रंग की है पीले रंग की है। उसके बगल मे एक कार है जो कि पीले रंग की है।

उनको नए- नए कपड़े पहनाए गए हैं जो कि प्रदर्शनी के लिए पहनाए गए हैं और पीछे दीवाल है। दीवाल में बहोत सारे फोटो बने हुए हैं लड़कों की और एक सीढ़ी है नीचे।

जोकि बैठने वाली है फ़ूर्श फ़ूल लाल कलर की है बैंगनी रंग की है सफ़ेद रंग की है पीले रंग की है और संतरे रंग की फूल है

सामने एक आदमी है जोकि जा रहा है। और बगल में कुछ पेड-पोधे लगे हुए है जोकि हरे-भरे है। सामने एक पानी की टंकी दिख रही है जोकि काफी ऊँची में है।